है और बेंच पर भी साइकिल लगी हुई हैं।

और इसमें साइकिल के रिंग भी टंगे हुए हैं।

यह एक बड़ा मकान दिख रहा है इसमें स्टील की ग्रिल लगी हुई है।

और ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और उसमें कुछ टब भी दिख रहे हैं एक बोर्ड भी दिख रहा है।

इस फोटो में कुछ बाइक दिख रही हैं और कुछ आदमी भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक आदमी रनिंग मशीन पर चल रहा है।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

इस फोटो में एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है।

एक औरत है जिन्ने हाथ में पन्नी ले रखी है।